यह एक खुला मैदान है जिसमें लोग लेटे हुए हैं। वे एक्सरसाइज कर रहें हैं।

यहाँ एक बहोत ही बड़ी इमारत है। साथ में बहोत से प्रकार के पेड़ पौधे हैं।

एक बहुत सुंदर सा मकान है जिसमें बहुत सी भिन्न भिन्न प्रकार की लाइटे लगी हुई हैं।

सामने हमें कुछ लोग चलते हुए दिख रहे हैं दो गाड़ियां खड़ी हुई है एक उनमें से दूल्हे की भी गाड़ी है।

यह जो तस्वीर है यह उत्तर प्रदेश की है| चारो ओर घर ही घर हैं और एक पल्सर बाइक सामने खड़ी हुई है।

भी है जोकि बहुत सुंदर है लाइटों के साथ।